पिंक एंड ग्रे कलर में है और रोड के बाजु में वाइट एंड ब्लैक कलर की कुछ लाइन खींची हुई आजु बाजु में काफी हरियाली है हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं और यहाँ पर एक अ-लाइन का खम्भा भी --

यहां पर एक जंगल दिखाई दे रहा हैआजु बाजू में काफी हरा भरा ये जंगल है और बीच में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज के साइड में एक घर भी दिखाई दे रहा है।